इस फोटो में मुझे गाड़ियां दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी मशीने दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में सूरजमुखी का फूल दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक टेबल दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में रोड दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत सारी कार दिखाई दे रहीं हैं।

मुझे इस फोटो में बिल्डिंग दिखाई दे रहीं हैं।

मुझे इस फोटो में हॉल दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे गमले दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे फुग्गो की सजावटें दिखाई दे रही है।